इस फोटो में हमें एक व्यक्ति स्वेटर पहने और टोपी पहने हुए एक नदी के किनारे खड़ा दिख रहा है नदी का पानी बहोत ज्यादा साफ है और वो--

बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है और यहां बहोत सारा पत्थर भी है।

और अगल में बगल में एक आदमी का पैर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर हमें एक सारी ड्रेसस भी दिखाई दे रहा उसके बगल में एक पेशेंट ने--